इस चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है आदमियां दिखाई दे रहा है एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है हरे-हरे रंग के पौधे दिखाई दे रहे है एक आदमी पैर दबा रहा है एक लड़के को।